हाथ पर कप में चाय है और सामने एक झोपड़ी है।

यह एक दुकान है इसके अंदर कुर्सियां और मेज रखी हुई है।

इसके बाद बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

तथा सामने टेबल पर ढेर सारे पेपर्स फाइले बुक्स व नोटबुक --

यहां पर अनेक रंगों के पर्दे लटक रहे हैं।

तथा यहां पर रेत पड़ी हुई है।

तथा सामने की दीवार रेड कलर की है और साइड में सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह बहुत अच्छा होटल रूम है।

जो हाल ही में अपना काम करने में चालू हैं।

मकान की छत टूटी हुई है।

यह कितनी सुंदर बिल्डिंग है यहां पर बाहर हरे भरे छोटे पेड़ पौधे हैं।

इसके अंदर बहुत सारे बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं।

तथा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और यहां पर दो ड्रम रखे हुए हैं।

तथा कार्य करने के लिए मजदूर लगे हुए हैं।

और सामने एक आदमी मुंह पर मास्क लगाए खड़ा--

और इसके पीछे की साइड में एक पुराना मकान है।

तथा उसके पीछे एक लड़का खड़ा है जो उसके बाल काट रहा है।